जो कि बीज बनाती है खाद बनाती है अलग अलग प्रकार की सीड्स बनाती है जो कि हमारे पर्यावरण को और वातावरण को--